यहाँ पर हमें एक स्कूल जैसा दिखाई दे रहा है स्कूल का थोड़ी से पार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुछ चेयर्स रखी हुई है और काफी सारे लोग है यहाँ पर।

बाउंड्रीज बनी हुई है बाउंड्रीज बनी हुए है तथा कुछ पेड़-पौधे भी यहाँ पर दिख रहे है।